और एक दीवाल पे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का |

और एक ये येल्लो कलर का एक बाल्टी जैसा रखा हुआ है ।